नीचे का फ्लोर का कलर जो ब्राउन है।

एक गाड़ी भी दिख रहा है वाइट कलर का।

रोड में व्हाइट व्हाइट कलर का चिन्ह भी लगा के हैं और साइड में येलो और ब्लैक कलर से बना के भी है।

लड़की लोग और बुड्ढे लोग ने साड़ी पहना हुआ है।

इस फोटो में जो हमको एक बहुत बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है।

लोकल ब्रिज में बहुत सारा इंसान चल के जा रहा है।

इसका ऊपर में येलो कलर का कुशन रखा हुआ है।

दूर में बहुत बड़ा सा पहाड़ भी दिख रहा है।

बाहर मे एक ग्रे कलर का गाडी और एक वाइट कलर का गाडी रखा गया है।

इन मशीन का कलर लोग जो ब्लैक है।

लड़का इंसान लोग भी यहां काम कर रहा है।

साइड मे ग्रीन कलर का टिना से बॉउंड्री दे के है।

एक लाल कलर का बकेट भी दिख रहा है।

बहुत अच्छा बड़ा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है और नीचे में मिट्टी का है।

फोटो में जो हमको बहोत बड़ा सा मॉल दिख रहा है।

ग्लास ग्लास से हर जगह और अंदर में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

ये फोटो में जो एक टीना से छोटा सा घर बना के है।

ये फोटो में जो बिल्डिंग दिख रहा है घर जैसा।

रूम जो येलो कलर का है।

उन लोग का डेस्क और बेंच का कलर जो व्हाइट एंड ब्लैक है।

गाड़ी का साइड में एक पोस्टर लगाया हुआ है बिल्डिंग लोग का--

घर का कलर जो व्हाइट और येलो और पिंक है।

ए_सी जैसा भी कुछ डिख रहा है यहा में।